लौ पीजोन करके लिखा हुआ है।

यह एक हैम्ब्रो नाम से कोई मार्ट दिखाई दे रहा है।

यह एक फोर व्हीलर गाड़ी का सर्विंस सेंटर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है शॉप का नाम अरिहंत करके है यहाँ पे कुछ सामान दिख रहा हैं।